इन्हा सुन्दर लागत ता। खिड़की लागल बा। वहीजा अड़हुल के फुल लागल बा। गुलाबे के फुल लागल बा। बहुत सुन्दर लागत ता। तुलसी जी बातिन। बहुत सुन्दर ला --

उजर कलर बल बरता बहुत सुंदर लागता गेट लागल बा बहुत सुंदर लागता न शिवजी पार्वती जी बा न लो --